उस कुर्सी के ऊपर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ हैं सर्ट और पैंट पहन के--

और एक ऊपर में लिखा है आधार--

घाँस चर रहे हैं और--

ये एक व्यक्ति है जो ब्लू कलर के टी-शर्ट पहना हुआ हैं।

टूथब्रश भी टंगा हुआ हैं।